और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं घूरने और बहुत सारे --

और बहुत ही अच्छी बात है और गन्दी --